के बगल में एक ई-रिक्शा भी खड़ा हुआ है जोकि ब्रांड न्यू है।

इस मोबाइल टावर में कई कम्पनियों के टावर लगे हुए लग रहे हैं।

यह किसी होटल का मैरेज हॉल लग रहा है।

यह पूर्व उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय का एंट्री गेट है।

इस गेट के अंदर काफी सारे लोग अपने वाहनों से जा रहे हैं।

यह कोई लाइब्रेरी का दृश्य लग रहा है।

इसका नाम गम्भीर ड्राई क्लीइंग क्लीनर्स एंड ड्रायर्स है।

यहाँ इण्टर तक के बच्चों की पढ़ाई होती है।

पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी होती है।

यह छोटे छोटे बच्चों का एक डांस क्लास लग रहा है।

इन घांसों की कोई सिंचाई के लिए पाइपों के द्वारा पानी डाला --

यह किसी रेस्टोरेंट के अंदर का की तस्वीर लग रही है।

जिसमें बीच में एक पतली रोड है और अलग-बगल काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं।

इसमें लोहे के गेट और एक लोहे का शटर भी लगा हुआ है।